झुका हुआ है और यहाँ पे कुछ बाउंड्री भी दिया हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो लोग है वो--

यहाँ पे एक बड़ा-सा फील्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ घर दिखाई दे रहा हैं सामने में।